दोनों एक दूसरे को पकड़ के है।

दिखाई दे रहे और बुक सब भी दिखाई दे रहे।

एक ठो लड़का बैग पकड़ के बैग बुक के भी दिखाई दे रहा है और बुक स्टोर है।

जहां ग्रास कटर रखा है उसमें एक नीचे में कारपेट बिछा के जिसका कलर ब्लैक कलर है।

स्टेज भी ब्लैक और सफेद से सजा करके साइड में स्पीकर सब भी दिखाई दे रहा है।

छोटा मोटा घास भी दिखाई दे रहा है पेड़ सब भी दिखाई दे रहा है और एक ठो भी दिखाई दे रहा है।

लाइट्स सब भी देखे रेला है बाउंड्री से इंसान लोग भी खड़ा हो के दिखाई दे रहा है।

इसमें दिखाई दे रहा है तीन ठो बोट इसमें दिखाई दे रहा है दो ठो आइसक्रीम बेचने वाला।

खिड़की भी खोल के दलवाजा भी दिखाई दे रहा है तीन ठो।